ये भाई बढ़ियाँ दुकान में बैठ के फोटो खिचाये है।

ये तो फोटो डैम की लग रही है और ओवर ब्रिज में एक लड़का खड़ा है वाइट --

ये काका की मस्त फ्रूट की दुकान है मस्त केले के गुछे लटक रहै है।

सामने देख सकते हो तेल के डिब्बा दिख रहा है बढियाँ से मतलब तेल का जर्किन है आई और बोर्नविटा से लेकर--

बट ये फोटो कुछ - कुछ अ चाउमीन जैसी भी लग रही है बिरयानी जैसी भी लग रही है बहुत सुन्दर लग रही है।

सुन्दर - सुन्दर मछलियाँ यहाँ दिख रही है और सभी प्रकार की मछलियाँ यहाँ पे अविलबले है और बोहुत सुन्दर लग रही है।

ये फोटो तो किसी ढाबे की है की जैसे इधर ढाबा ही लिखा हुआ हैं बट वो बट कट चूका है।

ये देखो लड़के की लड़को का फैशन टच मेंस पार्लर एंड सैलून --

आ हल्का से इधर किनारे से पिंक लग रहा है शायद फोटो लेने वाले ने कुछ फिलटर का इस्तेमाल किया हुआ है।

आ क्या बोलते है अ पास्टर सामने वाला जो पास्टर है य अ--

इन्ही में से कोई है उनकी बातो को बिल्कुल ही फोकस लगा के सुन रही है।

उम उम जू में इस्तेमाल किये हुए जो सफ़ेद कलर के हा तार होते है।

और येलो कलर का पोल भी है उसकी मदद से बकायदा बाँध के रखे है बहुत खूबसूरत फोटो लग रही हैं।

चुपके से लिए है या वो अपनी फोटो ले रहै थे और ये दो बन्दे भी आ चुके है।

और यहाँ तो लगता है की तो झंडा फहराते है बढ़िया से यहाँ कलर के--

जो स्वीटर पेहने जैसे लग रहै है वो फोटो ले रहै है कोई चीज का --

ये देखो ये फोटो को देख के तो कोई भी बोल सकता है की ये टॉकीज के सामने की फोटो है।